इस इमेज में एक गार्डन जैसी कुछ लगी है कुछ पीछे की लॉन्च है।

एक लेडी चश्में लगाए हुए हैं जिसके आगे--

पत्थर से बडा उस पानी के किनारे कोई व्यक्ति भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है पानी का रंग कला दिखाई दे रहा है।

और एक व्यक्ति पैदल जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उस क रोड पर एक कचरे की गाड़ी भी जाती हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे कुछ लड़कियां जमीन पर बैठ कर कुछ व्यायाम करती हुई नजर आ रही हैं।